गेट खुला हुआ है और अंदर का प्रेमाइस बहुत अच्छा है हरा-भरा दिखाई दे रहा है ।

नाई नए तरह की वरेटी की दुखानें समझ में आ रही है बिल्लिंग के कलर से--

राउअंडिंग मे अनदर में किसी मंदीर के आजुबाजु का ग्राउंड है जिसके अंतरगत ए ।

नीला घर है जैसा महसूस हो रहा है उसके आजू बाजू में हरियाली है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं छोटे बच्चे एंजॉय --

सेकंड नंबर पर जो है वो बच्चा उससे आगे हो जाएगा।

एक चेयर लगी हुई है जो ऑफिस चेयर कहलाएगी ऊपर में तस्वीर है जो भगवान की फोटो दिख रही है।

बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है मिठाई की दुकान पूरी तरह से हाइजीन महसूस हो रही है ।

ये मंदीर का दुरुष्य है जो की इ इ भगवा कलर का मंदीर दिखाई दे रहा है

यह एक तालाब है बहुत साफ-सुथरा तालाब दिखाई दे रहा है और यह दीन का दृश्य होना चाहिए क्योंकि ऊपर में जो --

आकास है वो भी एकदम सफेद कलर का आकास है।

ये गांव का माहौल दिखाई दे रहा हैं जहा पर टीचर ।

यह दीवाली के पटाखों का दृश्य है जिसमें पटाखे फोड़े जा रहे हैं फुलझडि जोकी --

बहुत सारे मॉडल्स ऐवलेबल हैं और पूरा कांच से लदा हुआ शोरूम जैसा यह है ।

लबालब पेट्रोल पंप है जिसमें सफेद रंग की रोशनी है ।

और यहाँ पानी भी बहुत अच्छी तरह से स्प्रिंकलर के माध्यम से वो देते होंगे और हरियाली ही हरियाली है ।

कलर उसके घर के सामने का या आंगन का कलर व्हाइट अ रेड दिखाई दे रहा है।